ये तस्वीर में राधा कृष्ण की मूर्ति है।

उसने गुलाबी रंग का सिर के ऊपर कपड़ा बांधा है।

वो पीछे उनके घर का दरवाजे का गेट लगा है।

ये एक किचन रेस्टोरेंट की तस्वीर है।

दुकान में एक घड़ी भी लगी हुई है।

जिसके पास काफी तादाद में ज़ेवरात रखे हैं।

और लाइटें भी जलती हुई दिख रही हैं।

और स्कूल की बड़ी सारी इमारतें--

उसके आसपास बहोत सारी सुखी-सुखी झाड़ियां है।

जिन में बड़े से पेड़ भी लगे हैं।

जिसमें बहुत सारी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं।

एक टेबल के ऊपर फुगे लगे हैं।

और सुनहरी कलश लगे हुए हैं।

यह कपड़ों का बहुत ही अच्छा शोर --

जिसको फूलों से और लाइटों से बहुत अच्छे से सजाया हुआ है।

यहां एक मस्जिद की दीवार है।

मस्जिद में एक मिनारा भी दिखाई दे रहा हैं।

यह एक वॉटर पार्क की तस्वीर है।

जिसको सफेद लाइटों से बहोत ही अच्छे से--